उसके चारों तरफ खिड़कियाँ बनी हुई है और बाहर --

लाल रंग की ईटे रखी हुई है जो की चार--

लोहै के बहुत सारे खम्भे लगे हुवे है जिनमें --

चारों तरफ उसके पीले काले रंग की बैलूनस लगाए हुए है।

ईटे लगाई हुए है बिजली के काम्बे लगे हुए है जिनमे लाइटिंग --

छत पर बहोत सफेद रंग की टंकी रखी--

और मग्गीस है जो की जो की ऑस्ट्रिन्ग रखी हुई हैं पानी की बॉतल्स है और बहोत सारी--

एक पुराना खंडर है जिसके दिवारो पर बहुत ही सुन्दर नकाशी की हुयी है और --

सामान और कागज़ फेंके हुए है और साथ में दवाई की दुकान है जिसमे बाहर --

चावल की धान की खेती लगाई हुई है जिसमें--

सड़क के किनारे एक मंजिला हिमारत हैं जिसमे--

एक दो मंजिला इमारते भी है और पत्तियों का रंग हरा है बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं पहाड़ है।

कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है और गाड़ियाँ जा रही हैं।

सामने तीन मंज़िला ओर चार मंज़िला इमारत है जिसमें चौथी मंजिल पर कपड़े टांगे हुवे है आसमान नीले और सफेद रंग का हैं।

सफेद और नीले बादलो से घिरा हुआ है।